लड़की डांस कर रही है स्टेज पे जिसने कि रेड कलर का लहंगा और--

यहाँ पर कुछ आदमी और लड़के और औरते योगा कर रहे हैं और यहाँ पे ऐसी लगी हुई है खिड़कियाँ दीख रही हैं और परदे भी दिखाई दे रहे हैं।

एक आदमी वाइट कलर के कपडे में खड़ा है और पर्दे लगे हुए है एक आदमी बैठा है।

ये एक चर्च है जिसका अ--जहाँ --का कलर सफेद कलर का और यहाँ पे बड़े-बड़े पंखे लगे हुए है और--

तीन आदमी खड़े हैं एक आदमी सफ़ेद शर्ट में हाथ में प्लेट लेके खड़ा है यहाँ पे इग्ज़ॉस्ट फैन दिख रहा है यहाँ की दिवारे क्रीम और पिंक कलर की दिख रही है पंखे लगे है लाइट्स भी लगे है।

यहाँ पर एक नदी दिख रही है नदी मैं एक नाव दिख रही है नाव मैं दो लोग दिखाई दे रहे हैं।

एक आदमी हाथो में बांस पकड़ कर के नाव को आगे बढ़ा रहा है और आसमान दिख रहा है दूर-दूर में पहाड़ दिखाई दे रहे हैं शाम का वक़्त है।

यहाँ पर बस स्टैंड है जहाँ पर ढेर सारी बसे रखी हुई हैं जिनका कलर हरा पीला और सफ़ेद दिख रहा है और--

और किताबों में रस्सी बंधी हुई है।